और बिल्डिंग भी काफी अच्छी खूबसूरती से रची हुई है बहुत अच्छी है।

टाइमिंग लिखी गई है साथ में साइड‌‌‌‌‌‌ बोर्ड पे भी डॉक्टर का ए क्लिनिक का नाम है और अंदर की तरफ दवाइयाँ भी नजर आ रही है।

ऊपर की तरफ ढाल है सुराही और करछी की तरह कुछ बर्तन से नजर आ रहे है यहाँ पर।